और एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है।

अउर चार तकिए भी रखे हुए और बीच में एक टेबल भी रखी हुई है।

और बहोत सी टेबल भी रखी हुई है और टेबलों के पास बहोत सी चेयर भी रखी हुई है।

उसे तस्वीर के अनुसार यह एक चादरो और पायदान की दुकान है।

और पास में एक बैग भी रखा हुआ है और ऊपर पायदान अलग अलग प्रकार के रखे हुए हैं और कई प्रकार की चादर भी रखी हुई है।

इस खिलौने में अलग अलग प्रकार की लाइट लगी हुई है।

इस तस्वीर में यहां पर बहुत से टेंपो दिखाई दे रहे हैं।

और चार आदमी दिखाई दे रहे हैं एक आदमी नीचे झाड़ू लगा रहा है तो तीन आदमी खड़े हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी मछली पड़ी हुई है और जो की काट रखी है।

और इसमें तीन ए_सी भी लग रही है और इसके बाहर एक मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

और एक मशीन भी रखी हुई है जो लेंटर की है।

एक आदमी वो आगे बैठा हुआ है एक आदमी पीछे बैठा हुआ है दो थर्माकोल की सीट भी रखी हुई है।

जो कि शरारे जैसे दिखाई दे रहे हैं और फ्रॉक भी दिखाई दे रहे हैं और पैंट और शर्ट भी दिखाई दे रही है।

यह एक रूम दिखाई दे रहा है अउर इसमें चिनाई का काम चल रहा है।

यह एक स्पेशल मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है।

और कार फूलों के रंगों बिरंगे फूल से सजी हुई है।

इस तस्वीर के अनुसार यह एक शॉप की दुकान दिखाई दे रही है।

जो कि माता के चेहरे ढके हुए है और एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।